यह एक श्वरुचि रेस्टोरेंट है जहाँ पर काफी सारे लाईट जल रहे --

यह किसी सम्मलेन शादी पार्टी की तस्वीर है। जहां पर काफी सारी चेयर्स रखी हुई हैं और कुछ व्यक्ति खड़े हैं और यहाँ ऊपर लाईट और घास नजर आ रही --

यहाँ पर काफी सारी महिलाएं खड़ी हैं और यहा कुछ बाईक्स और स्कूटी खड़ी हैं एक कार है जो सफ़ेद रंग की है।